यहाँ पर मुझे बैंक ए_टी_म मशीन रखी हुई दिखाई दे रही है उसके अंदर बहोत सारे इंसान उम्म पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं।